और यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स रखी हुई हैं।

झाड़ू दिख रहे हैं झोले दिख रहे हैं बोरियां रखी हुई दिख दिख रही है इनमें कुछ रखा हुआ है बहुत सारे झाड़ू दिख रहे हैं जो काफी डिज़ाइन - डिज़ाइन के दिख रहे हैं।

और यहाँ पे कार पार्किंग के लिए ए.सी. नॉन - ए.सी. डीलक्स रूम डबल रूम सितमराठी --

ओ काफी तेज़ी से निकल रहा है और यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा --

यहाँ पर एक रस्ता दिख रहा है जो की बहुत बड़ा है और काफी अच्छा है काफी सुन्दर लग रहा है।

यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है ज्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं।

यहाँ पे तालाब के किनारे एक जीना बना हुआ है जिससे चढ़ के उतर के व्यक्ति नीचे पहुंचे है।

और यहाँ पर एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का एक ब्लैक कलर का रिक्शा रखा है ये।